बहुत सारे कलाम के पैकेट भी किलि में लगाया हुआ है।

यह गेट के सामने बहुत सारा सीढ़ियां भी है।

यह फोटो में मुझे एक सफेद कलर का गाड़ी दिख रहा है।

यह गाड़ी के ऊपर कुछ लाइट भी जल रहा है।

यह फोटो में मुझे एक क्रिसमस ट्री नजर आ रहा है कुछ चेयर भी दिख रहा है।

दो काले कलर के चेयर भी नजर आ रहे हैं।

यह खाने वाला चीज काफी टेस्टी लग रहा है।

यह फोटो में मुझे एक जिम नजर आ रहा है इस जिम में बहोत सारे काले कलर के ट्रेडमिल भी दिख रहा है।

दीवार में एक पोस्टर भी चिपका के रखा हुआ है।

यह दुकान लकड़ी से बना हुआ है।